एक बिल्डिंग हम देखी जा रही है जो कि क्रीम कलर की है और उसके सीधे एकदम--

जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं ये एक एसबीआई एटीएम बैंक -- एटीएम है।

इसमें एसी भी लगे पंखे भी लगे हुए हैं गाड़ी भी लगे हुए हैं काफी खूबसूरत से सजाया भी गया है।

इस पिक्चर में जैसा कि देख सकते हैं ट्रैफिक और मार्केट दोनों को मिक्स करके दिखाया गया है.